यह एक बहुत ही खुबसुरत सा तस्वीर है जोकि पहाड़ों के ऊपर से लिया गया है नीचे के तरफ बहुत से हरे भरे जंगल दिख रहे हैं।

छोटी मोटी सी दुकान है। सामने की तरफ एक महिला बैठी है। पीछे की तरफ मस्जिद दिख रहा है।

ढेर सारे बस खड़े दिख रहे हैं और बस का रंग सफेद और लाल कलर का है और नीचे की तरफ गढ़े पानी तथा कचड़े दिख रहे हैं।